हमको पिक जोकी बहुती प्यारे लगराहा हे हमको साइकिल दिखराहा हे रिक्शा दिखराहा हे बाइक दिखराहा हे रिक्शा हमको चार्जिंग वाले दिखराहा हे जोकी बहुती बढ़िया लगराहा हे हमको साइकिल दिखराहा हे रिक्शा डिकराहा हे बाइक

ऊपर में दिख रहा है गुलाबी पर वाइट दिख रहा है माइक दिख रहा है ऐसे बोलते हुए दिख रहा है|